ऑटो है जोकि यह मार्केट में बहुत ही ज्यादा चलता है।

पेंचर सटना एवं गाड़ी का टायर बदलना ऐसी कई प्रकार की समस्यों को --

बस अवेलेबल है और सवारियों को जहाँ अपना जाने का --

मन हो तहाँ ये बस पहुंचाता है। उसके बदले इसे पैसा चुकाना पड़ता है। यह एक बस है।